यह एक मॉल दृश्य से दिखाई दे रहा है।

यहां प्लास्टिक के डब्बे में कुछ सामान रखे हुए हैं।

बगीचा का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सोलर की लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है।

लकड़ियों से बनी इमेज दिखाई दे रही है।

बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

दिन का समय प्रतीत हो रहा है यह काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह एक होटल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बिरसा विहार रांची लिखा हुआ है।

यह समारोह का दृश्य है यहां बहुत सारे तंबू बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ट्रांसफार्मर भी दिखाई दे रहा है।

यहां इनवर्टर और बैटरी भी दिखाई दे रही है।

यहां कांच की कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां काफी रोशनी भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक बहुत बड़ा टायर रखा हुआ है यहां टी_वी लगे हुए हैं।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

स्टेडियम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग जमीन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ दो पहिए वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां काफी और चाय बनाने वाली मशीन रखी हुई है।

लाल रंग की चादर बिछी हुई है।

यहां बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

कुछ सोफे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

बहुत बड़ा चट्टान दिखाई दे रहा है।

एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

यहां आसमान में बादल भी मौजूद हैं।

यहां दो तस्वीरों को दीवार से लगा कर रखा गया है।

कुछ झूले लगे हुए हैं यहां कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।